रेस्टोरेंट और वहां पे बहोत सारी फोटो लगाई गई है खाने की।

ये काली रंग की है और इसके पैर पीली है एवं चोंच बहोत लम्बी है।

और जो घर रहे हैं ओ बहुत बड़ी है और उसने रेड से घेरे गए हैं और बीच में बहुत सारा झूला एवं जिम करने की समाने भी नजर आ रही है।

वो शीशा लगाई गई है उसमें बहोत सारे सोने एवं एक प्रिंटर भी देखने को मिल रही है।

सामने में एक बहुत बड़ी होटल है और हो और होटल में बहुत सारे लोग टेबल पे बैठे हैं।

सामने एक बहोत बड़ी मार्केट देखने को मिल रही है और वहां पर एक दुकानें हैं।

जोकि बहोत बड़ी है और लाल एवं हरे रंग का है।

एवं वहां पे दो टावर भी देखने को मिल रही है।